और पेड़ पौदे हरे-हरे हैं और जो देखने मैं बहुत अच्छे लगते हैं और काम्बे भी हैं।

जो सफ़ेद कलर का हैं आसमान बहुत अच्छे लगते हैं देखने में अर एक आदमी सायकल लेके शायद उधर जा रहे हैं।

यह एक बहुत अ बहुत अच्छे से सजा हुआ हैं लगता हैं किसी का हैप्पी बर्थडे है।

बहुत अच्छे लगते हैं देखने मैं। वहाँ पे जाने मैं बहुत अच्छा लगे अच्छा लगेगा शायद और --

है ये मंदिर है जो भगवान है और सफ़ेद कलर का गोरा है।

जो अच्छे नहीं लगते हैं देखने मे गाड़ी का रंग बहुत अच्छे लगते हैं देखने मे --

और बोहोत सारे आदमी भी हैं जो कसरत कर रहे हैं।

और सफ़ेद सफ़ेद इसके नीचे मे हैं जो अच्छे लग रहे हैं उधर खम्बे हैं उधर पेड़ पौधे हैं।

और ये आदमी टोपी पहने --